यहाँ पर हमे सामने एक बैंक दिखाई दे रही है| बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

लगा हुआ और सामने हमें यह लाइट भी जलते हुए दिखाई दे रही है। खंभें दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमें यहाँ पर चर्च दिखाई दे रहा है बड़ा-सा बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमे मतलब दिवारे भी दिखाई देरी है।